इस तस्वीर में मुझे एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है।

कैफे के अंदर मुझे बहोत सारी चेयर्स और टेबल दिख रही है और लोग कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं।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

आसपास मुझे काफी ज्यादा हरे भरे पेड़ और नजर आ रही हैं।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

मुझे घर के बाहर एक गेट दिखाई दे रहा है जहां पे मुझे एक बच्चा--

इस तस्वीर में मुझे एक बस स्टैंड नजर आ रहा है जहाँ पे मुझे बहोत सारी बसेस खड़ी हुई नजर आ रही है।

जो स्काई ब्लू और येलो कलर का है मुझे यहां पे बहुत सारे पिलर्स भी दिख रहे हैं यहां पे कुछ व्हाइट कलर की कार्स रुकी हुई हैं जो पेट्रोल भरवा रही हैं।

कुछ आदमी मुझे पेट्रोल भरते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग मुझे यहां पे इधर-उधर भी नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ मुझे हरे-भरे पेड़-पौधे और झाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं।

दीवार के साथ मुझे दो और साइकल नजर आ रही है।

आस पास मुझे हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियां भी दिखाई दे रही है।